उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए औड और कुछ लोग खड़े हैं और प--

अं जिसमें कि लोग घूमने फिरने जाते हैं और हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

अ जिसमें की आग लगी हुई है।

सब पैकिंग हैं और ल रेड पीला विला कुछ दिखाई दे--

यह एक सूरज सी --

यह एक छोटी मोटी एक होटल है।

और ये क्या क्या रखी हुई है समझ में नहीं आ रही है।

अम्म और एक बेड लगा हुआ है बेड अ बेडशीट उजला कलर का है।